कुछ टेबल्स भी दिखाई दे रही है।

एक बड़ी सी टेबल रक्खी हुई दिखाई दे रही है।

दे रही है और हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई--

इस फोटो में हमें एक बड़ी सी दुकान दिखाई--